यहां पे काफी बाईके लगाया गया है और गमला में फूल भी लगाया है।

बगल में बैलून भी लगाया हुआ है और तरह तरह के लाइटे भी लगाया गया है।

इस रूम में टेबल का काम--

दोनों तरफ से वो लोग पकड़े हुए हैं।

यहां पे काफी बिस्किट रखी हुई है।